सामने की तरफ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वह एक गेट के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक बनता हुआ घर दिखाई दे रहा है इसमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक बंगलो दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

और सामने की तरफ एक नीली कलर की बस दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बस के सामने एक सफेद कलर की कार दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक ओशियन दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक औरत दिखाई दे रही है और एक कॉउ दिखाई दे रही है।

और वह मूर्ति एक तलवार लिए हुए दिखाई दे रही है वह मूर्ति है टेबल में रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ ब्राउन कलर की घांसे दिखाई दे रही हैं।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

सामने की तरफ एक खाली --

तीन कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे --

और पानी के ऊपर एक पीला और ऑरेंज कलर का कुछ --

सामने की तरफ बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बोट चलती हुई दिखाई दे रही हैं वह बोट --

सामने की तरफ दो आदमी दिखाई दे रहे हैं और वह पेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्लस का चर्च का निशान दिखाई दे रहा है और नीला कलर का आसमान भी दिखाई --

सामने की तरफ एक खाली रोड दिखाई दे रही है इसलिए बहुत सारे ऑटो रिक्शा और बहुत सारी बाइक चलती हुई दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक कार दिखाई दे रही है ब्लू कलर की वह --

सामने के तरफ एक रोड दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी स्कूटी मोटर --

सामने के तरफ एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि एक आदमी की दिखाई दे रही है।

और समुद्र बहुत गहरा दिखाई दे रहा है समुद्र के बगल में --

बहुत सारी नाव खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं आसमान नीला कलर का दिखाई दे रहा है और सफेद --